अंदर छोट छोटे गमले रखे हैं।

और एक कुर्सी रखी इसके पीछे--

सामने कट्टे से हैं वह सारे।

और तखत दिखाई दे रहे है।

और एक ये टास फारम्स है।

छोटे छोटे बल्ब से जल रहे--

और ईट सी बिछ रही हैं डिजाइन सी।

और ऊपर लोहे से की भी बन रही है टेंट टाइप और पीछे घर है बहुत सारे --

बहोत सारे आदमी झूलों पर बैठे हैं।

नीचे टंकी भी है इसके --

और उस साइड भी बहुत सारी गाड़ी मोटरसाइकिल हैं।

ये एक मंडी है जिसमें मछली कटाई चल रही और मछली बिके हैं।

और वॉश बेसिन रखी है ऊपर।

ये फोन पे का स्कैनर रखा--